जहां पे यहां पे कपड़े वगेरा काफी रखे हुए हैं देख सकता हूँ तिरंगा झंडा नज़र आ रहा है जो सीधा लम्बा दिखाई दे रहा है।

बाकी ये तो दिलेहरीके कोई रेशन है जो की

व्हाइट और रेड कलर की दिखाई दे रही है इस पिक्चर के माध्यम से जैसा साफ साफ देख सकता हूँ।

कुछ गाड़ियों को पार्क किया गया है हमें साफ साफ देख सकता हूं।

आस पास में यहां पे पत्थर है पत्थर पे लोग बैठे हुए हैं जैसे ये--